ये चित्र किसी भवन का है जो बाहर से लिया गया है उसमें दूर से जमीन दिख रही है उस भवन में लाल रंग से सफेद रंग से पुताई दिख रही है।

और बालकनियाँ दिख रही है खम्बे नजर आ रहे हैं पेड़ लगा हुआ है और थोड़ी सी धुप चमक रही है उस बिल्डिंग के पार --

चित्र में भी एक बस खड़ी हुई दिख रही है उसके पीछे कुछ भवन बने हुए हैं जमीन दिख रही है उसपे बस की छाया दिख रही है बस सफेद कलर की है।